बरन मेरी क्रिसमस दिखाई दे रहे हैजो कि पुतले के बने हुए है बहोत सारे पुतले बने हुए है और यह ईसाइयो का धर्म कहलाता है।

बहुत बड़े और ये छोटे - छोटे कंकड़ भी डले हुए है और गोल - गोल मट्टी में गढ़े होकर वहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगे हुए है।

यहाँ पर गार्डन मे हमे बहुत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है नीचे फर्श रखा हुआ है और एक कैमरे के तरह अ तीन लाइटे लगी हुई है एक स्टैन्ड फैन पर--

हु हु राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है जो झंडा कहलाता है और बिजली विद्युत विभाग वाले --

एक कटोरा सा रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बगल में बहुत सारे फूल भी रखे हुए है एक औरत वहाँ पर बैठी हुई सजा रही होती है।